general features in avogadro पर स्पोकन tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे ph values बदलकर compounds यौगिकों में proton transfer
crystal संरचनाओं को load करना
विभिन्न miller planes दिखाना
super cells बनाना
coordination समन्वय compounds में geometries दिखाना और nanotubes बनाना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os version 1404
avogadro version 111
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको avogadro interface से परिचित होना चाहिए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
इस tutorial में उपयोग हुई उदाहरण files code files में दी गयी हैं
मैंने एक नयी avogadro window खोल ली है
मैं ph values बदलकर compounds में proton transfer दिखाऊँगी
इसके लिए ment library से मैं amino acids load करुँगी
build menu उपयोग करके fragment library पर जाएँ
fragment library में amino acids folder पर double क्लिक्क करें
dalanine cml चुनें और insert पर click करें
insert fragment dialog बंद करें
संरचना को अचयनित करने के लिए ctrl shift और a दबाएं
उचित orientation अभिविन्यास के लिए navigation tool उपयोग करके संरचना को घुमाएं
मैं ph बदलकर amino acids में proton transfer दिखाऊँगी
build menu पर जाकर add hydrogens for ph चुनें
default value 74 के साथ add hydrogens for ph text box खुलता है
text box में ph value को बदलकर 70 करें ok पर click करें
संरचना पर ध्यान दें carboxylic group cooh carboxylate ion में बदल गया है
amino group nh2 पर प्रोटॉन nh3 + आ गए हैं
build menu पर जाएँ और add hydrogens for ph चुनें
text box में ph को 20 करें और ok पर click करें
carboxylate ioncarboxylic group में बदल गया है
build menu पर जाएँ और add hydrogens for ph चुनें
text box में ph को 100 करें और ok पर click करें
carboxylic groupcarboxylate ion में बदल गया है
amino group nh2 से प्रोटॉन हट गए हैं
संरचना को डिलीट करने के लिए delete key दबाएं
ph बदलकर मैं amines में proton transfer दिखाऊँगी
इसके लिए मैं fragment library से ethylamine संरचना load करुँगी
insert fragment dialog box बंद करें
संरचना को अचयनित करने के लिए ctrl shift और a दबाएं
उचित orientation अभिविन्यास के लिए navigation tool उपयोग करके संरचना को घुमाएं
build menu पर जाकर add hydrogens for ph पर click करें
add hydrogens for ph text box खुलता है
text box में ph value को 70 करें ok पर click करें
संरचना को देखें amino group पर प्रोटॉन आ गए हैं
build menu पर जाकर add hydrogens for ph पर click करें
text box में add hydrogens for ph को 20 करें और ok पर click करें
यहाँ हम संरचना में कोई बदलाव नहीं देखते हैं
क्योंकि ethylamine केवल बुनियादी medium में proton transfer दिखाता है
build menu पर जाकर add hydrogens for ph पर click करें
text box में ph को 100 करें और ok पर click करें
amino group से प्रोटॉन हट गए हैं
अब मैं crystal library से crystal structures load करना और कुछ crystal properties दिखाऊँगी
new window खोलने के लिए tool bar पर new icon पर click करें
file menu पर जाएँ import पर जाएँ और crystal चुनें
insert crystal dialog box खुलता है
यहाँ हम विभिन्न folders देख सकते हैं
halides folder पर double click करें
naclhalite cif file चुनें और insert पर click करें
insert crystal dialog box बंद करें
यहाँ उचित view के लिए मैं tool settings और display settings बंद करुँगी
panel पर sodium chloride की crystal संरचना दिखती है
संरचना के साथ इसके cell parameters दिखते हैं
panel के ऊपरी बायीं तरफ आप देख सकते हैं: सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का
अब इस crystal के लिए मैं miller planes दिखाऊँगी
इससे पहले मैं miller indices के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दूँगी
miller indices तीन numbers hkl का एक set होती है
वे crystal systems में दिशाओं और आंतरिक planes को उल्लिखित करने में उपयोग होते हैं
अब sodium chloride सिस्टम में miller planes के लिए
view menu पर जाएं और crystal view options पर click करें
crystal view options menu दायीं तरफ लोड होता है
miller indices radio button पर click करें
मैं h k l values को 232 करुँगी
crystal में परमाणुओं के planes और स्थानों में बदलाव को देखें
अब मैं super cell बनाने के बारे में समझाऊँगी
build menu पर जाएँ और super cell builder चुनें
super cell parameters dialog box खुलता है
super cell options में हम unit cell parameters a b और c बदल सकते हैं
मैं a b और c की field values बदलकर 2 2 2 करुँगी
फिर generate cell पर click करें dialog box बंद करने के लिए close पर click करें
उचित view के लिए आवश्यकतानुसार zoom करें
panel पर crystal lattice दिखता है
अब मैं miller indices को बदलकर 323 करुँगी
navigation tool उपयोग करके cell को घुमाएं
यहाँ dotted चित्र plane दिखाता है
h k l values को बदलकर आप विभिन्न planes देख सकते हैं
अब मैं hexamminecobalt iii के लिए octahedral geometry बनाऊँगी
एक new window खोलने के लिए tool bar पर new icon पर click करें
hexammine cobalt iii बनाने के लिए draw tool icon पर click करें
element drop down में other चुनें
periodic table window खुलती है
सूची से cobalt चुनें
periodic table window बंद करें
panel पर click करें element drop down से nitrogen चुनें
cobalt परमाणु पर छः bonds बनाने के लिए click और drag करें
ध्यान दें प्रत्येक nitrogen दो जुड़े हुए hydrogens रखता है
hexamminecobalt iii संरचना में प्रत्येक nitrogen तीन जुड़े हुए hydrogens रखता है
element drop down से hydrogen चुनें
सारे nitrogen परमाणुओं पर click और drag करें
hexamminecobalt iii संरचना panel पर बनती है
display settings menu को खोलने के लिए display settings button पर click करें
अब मैं hexamminecobalt iii संरचना की octahedral geometry दिखाऊँगी
इसके लिए मैं polygon display type उपयोग करुँगी
यदि polygon display type सक्रीय नहीं है तो सक्रीय करने के लिए add button का उपयोग करें
polygon display type checkbox पर click करें
optimize करने के लिए tool bar पर auto optimization tool पर click करें
force field drop down में uff चुनें
optimize करने के लिए start button पर click करें
auto optimization प्रक्रिया रोकने के लिए stop पर click करें
navigation tool उपयोग करके octahedral geometry देखने के लिए संरचना को घुमाएं
उसी प्रकार यह iodine heptafluoride की pentagonal bipyramidal geometry है
अब हम build menu में nanotube builder नामक एक अन्य विशेषता देखेंगे
एक nanotubenanometerscale की tube जैसी संरचना है
भिन्नभिन्न प्रकार के nanotubes के उदाहरण हैं: boron carbon nitrogen boron carbon और carbon
carbon nanotubeकार्बन संरचना का लघु रूप सिलिंडर है जो किनारों पर जुड़े हुए hexagonal graphite मॉलिक्यूल्स रखता है
new window खोलने के लिए tool bar पर new icon पर click करें
nanotube के बेहतर view के लिए मैं background रंग को नीला करुँगी
view पर जाएँ और set background color पर जाएँ
select color dialog box खुलता है
box में नीला in चुनें और ok पर click करें
build menu पर जाएँ और nanotube builder चुनें
nanotube builderपैनल के नीचे खुलता है
nanotube builder menu को देखने के लिए मैं avogadro window को resize करुँगी
nanotube के प्रकार को निर्धारित करने के लिए आप chirality indexes n m को set कर सकते हैं
मैं index values n और m को 4 और 4 set करुँगी
length को 400 four point zero zero करें
unit field को periodic units करें
nanotube में double bonds को दिखाने के लिए find double bonds checkbox पर click करें
फिर build पर click करें
संरचना को अचयनित करने के लिए ctrl + shift + a दबाएं
अच्छे view के लिए navigation tool उपयोग करके nanotube को घुमाएं और zoom करें
आगे मैं 66 index values के साथ एक nanotube बनाऊँगी
build menu पर जाएँ nanotube builder चुनें
n और m values को बदलकर 6 और 6 करें फिर build पर click करें
दो overlapping nanotubes को देखें
nanotubes को optimize करने के लिए auto optimization tool पर click करें
force field drop down में mmff94 चुनें
optimize करने के लिए start button पर click करें
auto optimization प्रक्रिया को रोकने के लिए stop पर click करें
संरचना को अचयनित करने के लिए ctrl + shift + a कीज़ दबाएं
panel पर doublewalled दोहरी दीवार nanotube दिखती है
अच्छे view के लिए navigation tool उपयोग करके nanotube को घुमाएं
अब मैं nanotube में carbon hexagon rings दिखाऊँगी
display types menu में ring checkbox चुनें
carbon hexagons देखने के लिए navigation tool उपयोग करके nanotube को घुमाएं
सारांश में
इस tutorial में हमने सीखा:
ph values बदलकर compounds में proton transfer करना
crystal library से crystal structures load करना
विभिन्न miller planes दिखाना
super cells बनाना
coordination compounds में geometries दिखाना और nanotubes बनाना
assignment में
coordination library से संरचनाएं load करें और geometries दिखाएं
chirality index 99 के साथ nanotube बनाएं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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है